यहाँ पर मुझे एक टेनिस कोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां टेनिस कोर्ट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नेट भी लगी दिखाई दे रही है। यह बिलकुल एयर पैक है और यहाँ वॉल का कलर मुझे ग्रीन और ब्लू दिखाई दे रहा है।

पेड़ का कलर हरा भरा दिखाई दे रहा है और यह ग्राउंड में मिट्टी ज्यादा दिखाई दे रही है कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है और ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है।

कुछ बॉउंड्री दिखाई दे रही है जो की यलो और ब्राउन कलर की है उसके पीछे मुझे कुछ झाड़ दिखाई दे रहे है और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक खम्बे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे कुछ मीनार टाइप में भी दिखाई दे रहा है और कुछ विंडोज दिख रहा है जो की बहुत ही डिजायन दिख रही है और असमान बहुत साफ सुथरा खली दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे कार भी दिखाई दे रही है और यहा पर मुझे कुछ झाड़ भी दिख रहे है यह पूरा सिन देखने में बहोत ही अच्छा और शानदार लग रहा है।

.और यहाँ शेड टिन का डला हुआ है उसके पीछे मुझे पेड़ दिखाई दे रहे है ग्राउंड में वाइट कलर की लाइन भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे आसमान भी अच्छा हो रहा है यह पूरा देखने पे बहुत ही अच्छा और प्रॉपर ग्राउंड लग रहा है।